यहाँ पे अस्टेज बना हुआ है जिस पे चार लड़कियाँ डांस कर रही हैं। ये चारों लड़कियां एक ही तरह के ड्रेस पहने हुए हैं और गहने जो --

अभी ट्रेन नहीं आई है। पैसेंजर लोग कुछ जो हैं बैठे हुए हैं। यहाँ पे भीड़ ज्यादा नही है। साफ़ सुथरा लग रहा है।

और यहाँ पे गया है। इस छत ढलैया करके ऊपर में स्टील का बिल्डिंग दिया गया --